और ये बहुत ही ज्यादा पैसा लगा कर बनाया गया मंदिर है और ये बहुत ही ज्यादा ऐन्सियनट टाइम का है और यहाँ पर बहुत ही लोग--

लंबी होती हैं और बसें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीस --

यहाँ पर ये कोई जगह लग रही है जहा पर ये एक आदमी भाषण दे रहा है और ये जगह बहुत ही ज्यादा बढ़िया है।

और ये से ज़्यादा फायदा नहीं होता है।